यहां पर एक बहुत बड़ी चिन्ह दिख रही है जिसमें बहुत सारी अलग-अलग तरह की काफी ज्यादा मशीने रखी हुई है।

कुछ बाइक्स और साइकिल यहाँ पर खड़ी हुई है।

यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का कैरेट रखा हुआ दिख रहा है उसके पास फिश को जमा कर रखा गया है।

यहां पर कई सारे फिश रखी हुई है यह एक फिश की शॉप है।

यहां पर एक रेड कलर का द एफ.एम. मार्ट --

यहां पर कुछ गर्ल्स होगा करते हुए दिख रही है।

यहां पर एक व्हाइट सीट पर एट्टी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर ब्लू और पिंक कलर के इलेक्ट्रिक ऑटो खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

कुछ बच्चा आर्मी की ड्रेस में ड्रेस में खड़े हुए दिख रहे हैं।

एक बहुत सुंदर गेट बना हुआ है जिस पर ब्लू ऑरेंज और येलो कलर की किया हुआ है।

इसमें ऑडियंस जो येलो कलर से कलर किया गया है और उसे पे बॉर्डर पर ब्लैक कलर किया गया है।

इन्होंने व्हाइट ड्रेस पहने हुए हैं चर्च के अंदर पंखा लगा हुआ है।

जिस पर प्लस का साइन बना हुआ है।